बीच में एक पेड़ दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक पेड़ हैं राइट साइड में एक पेड़ हैं।

साइड में चार गो गाड़ी दिख रहें है।